इसके बाहर एक लेडिस बैठी हुई है।

उसके बाहर एक गेटमैन भी खड़ा है।

सामने में करकट दिया गया है।

एक धार्मिक स्थान का चित्र है जहां पे बहोत सारी मंदिरें बनी हुई है।

ये एक कपड़े का दुकान है जहां पे बहुत सारे अंडरवियर के डब्बे रखे हुए हैं।

ये पानी बहोत दूर तक फैला हुआ नजर आ रहा है जो की हल्के ब्लैक कलर में है।

और दो व्यक्ति खड़े नज़र आ रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे ट्यूबलाइट दिखाई दे रहे हैं।